बाजू में ही एक बड़ा सा बगीचा है।

बागीचे में सब योगासन कर रहे हैं।

उसके बाहर एक बहोत बड़ा पेड़ है।